इस फोटो में एक कपड़े की दुकान है यहां बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं ऊपर पंखे लगे हुए हैं।

यहां पर ड्रम्स में भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है नीचे वाइट कलर के टाइल्स लगी हुई है।

इस फोटो में एक पार्क दिखाई दे रहा है।